यह एक किताब का दुकान है बुक पिक्चर । इसमें सारे चीज मिलते हैं।

पत्थर का दीवार बना हुआ है। दीवार में पेड़-पौधे हैं।

हरी दिवारें दिख रही हैं।